यहां एक बड़ा लाइट दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यहां दो घर दिखाई दे रहा है।

यहां केरल को लिखा हुआ है।

यहां वाशिंग मशीन दिखाई दे रहा है।

यहां एक स्ट्रीट लैंप दिखाई दे रहा है।

पीछे जंगल दिखाई दे रहा है रेस्टोरेंट में बैलून लाइट से सजाया गया है।

यहां सैनिटाइजर वगैरा भी दिखाई दे रहा है।

दोनों मैगी खा रहे हैं दोनो चाय पी रहे हैं।

किसी फंक्शन का दृश्य लग रहा है यहां बहोत सारे कार पार्कड हैं।

यहां मिरर्स भी दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत सारे वॉल हैंगिंग स अ शेल्व्स दिखाई दे रहे हैं।

ये कुछ ब्लू कलर के बॉक्स है।

यहां आग जलाया हुआ है।

आग में रॉड डाल के रखा हुआ है।

पीछे एक सर्वर बोर्ड जैसा दिख रहा है।

यहां ऊपर ग्रीन कलर के पर्दे लगाएं गए हैं।

हां यू_बी एंटरप्राइज लिखा हुआ है।

इधर से अह पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

पीछे एक टॉवर दिखाई दे रहा है।

एक पाइप लगा हुआ है पाइप से पानी दे रहा है।

यहां सुंदर घास भी उगे हुए हैं।

ए एक बुकस्टोर जैसा दिख रहा है।

यहां बहोत सारे सेल्फ दिखाई दे रहा है।

ये कपड़ों का दुकान जैसा लग रहा है।

यहां दो आदमी दिखाई दे रहा है ए_टी_एम इंडियन पोस्ट का है।